और ये जो है तीन फ्लोर वाली बिल्डिंग है और उसका जो कलर कॉन्बिनेशन है बहोत ही अच्छा है जो ब्लू एंड ग्रीन कलर से कलर्ड किया गया है।